साइड में एक जनरेटर रखा है।

सामने एक नीले कलर का पर्दा लगा है।

जिसकी दूसरी साइड बहुत बड़ा पहाड़ दिख रहा है।

सामने एक शीशे का दरवाजा भी है और बाहर बहुत सारी बाइके खड़ी हुई हैं।

जिसमें कुछ लोग दिख रहे हैं।

और बहुत सारे लोग भी हैं।